और यहाँ पे छोटे बड़े कितने सारे पथ्हड़ रखे हुए है.

तो का देख सकते हैं ये एक--

बिब्बे सब रखे हुए है और यहाँ पे पांडा वांडा रखे हुए है।

खेलने के लिए क्या मस्त डिजाइन की गई है इस रास्ते पे चलेंगे--

देख सकते क्या मस्त ठीक कर यहाँ पे आई है और अपनी गाडी भी ठीक कराई है ये गाड़ी कितनी गन्दी हो चुकी है देख सकते है यहाँ पे सफाई--

बहोत बड़ा बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग का नाम पि डब्लू डी --

तो हेल्लो हेल्लो आप देख सकते है यहाँ पे ये सारे बोलिबोल खेल रहे है ये सारे के ड्रेस सेम ही लग रहे है।

इधर इधर वाली टीम वाइट ड्रेस वाइट शर्ट में है और इधर वाली टीम ब्लैक --

ये सारे पौधे गमले में लगे हुए हैं यहाँ पे आइए और खरीदिए आप भी पौधे और--

पेड़ लगाइए यहाँ पे खजूर का भी पोधा है देख सकते कितना बड़ा गमला में ये होके रखा है यहाँ पर देख सकते है आप बोहोत सारे--

तो हेलो हेलो आप देख सकते है यहाँ पे ये एक बहोत बड़ा मेला टाइप का लग रहा है जहाँ पे--

लगे हुए है येलो कलर के फ्लैग है रेड कलर के फ्लैग है और ब्लू है यहाँ पे ग्रीन भी है ये देख सकते है यहाँ पे रस्सी टाइप भी लगे हुए है ग्रीन हैं --

होटल का लग रहा है बहुत बड़े होटल लग रहा है इधर इसमें इधर से सीढ़ी भी है उधर से सीढ़ी है।

पीछे बहोत सारे बिल्डिंग बने हुए हैं।

और यहाँ पे बिल्डिंग भी बोहोत अच्छी अच्छी बनी हुई है यहाँ पर आइये और रावन दहन का एन्जॉय लीजिए आप आइये--

यहाँ पे भी आके कोचिंग इंग्लिश पढ़ सकते है।

तो हेलो हेलो आप देख सकते है ये एक--

दो दो घर लग रहे हैं यहाँ पे लिखे हुए है यहाँ पे--

यहाँ पे गमले में पेड़ पौधे सब लगे हुए है बहत ।

तो हेलो हेलो आप देख सकते है ये सब --

बहुत सारे लैरिअस इकठठा हुई है यहाँ पे --

गमलों से सजाया एक थर्मस भी है जिसमें पानी है।

तो हेलो भाई लोग आप देख सकते है--

आम का पेड़ है और यहाँ पे बहोत सारे घने घने पेड़ है जैसे--

बिल्डिंग लगी हुई है जिसक कलर वाइट है यहाँ पे रेड कलर के बोर्ड लगे हुए है।

निकतम मॉडेल कॉलेज लिखा हुआ है।

हेलो भाई लोग आप देख सकते है यहाँ पे एक रेस्टुरेंट का भिऊ है जिन--

बेकर्स है यहाँ पे निक बेकर्स मिलते है और ये --

ये अमरुद टाइप भी है यहाँ पे बहोत सारे कार्टून रखे हुए है केरेट रखे हुए है यह पे एक तराजू भी रखे हुए है और ये सारे अच्छे से सजा के रखे हुए है ये सब --

दो डस्टबिन दी है रोड की इस साइड पे और इस साइड यहाँ पे--

नदी के अंदर पेड़ लगे हुए है सूखे पेड़ सारे--